यहाँ पे एक पार्टी अ हो रही है और एक स्टेज बना हुआ है। उसपे एक सिंगर सॉन्ग गा रहा है। गिटार लिए हुए है।

और यहाँ पे क्रिस्चन का साईम्बल भी लगा हुआ है।

दुकान के बाहर में बोर्ड लगा है जिसपे कजरिया जियाकुर मुस्कान इन्टरप्राईजेज लिखा हुआ है।